जो होटल है। वो बोहोत बड़ों यामे सजावट हेगे शादी है या मे। बहुत सारे मोटरसाइकिले खड़ी होंगी।

मरीज हैं काऊ चीज़ कार्यालय हेगो काऊ चीज़ को पेड़ हैंगे बिजली के तार हैंगे।

और यहाँ पे हम पेड़-पौधा होंगे हरे-भरे शीशा के गेट लगे हो यहाँ पे सामने --

यो होटल हैगो जाके सामने मोटरसाइकिल खड़ी होंगी और कार खड़ी होंगी दो एक एक खूब सजावट हैगी।

छोटी-बड़ी घास है ऊपर आ रही है और नीले-नीले बॉर्डर हैं पहाड़ हैं।